और यहाँ पे ऊपर वाइट कलर में बादल भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे मिट्टी भी दिख रही --

लगी हुई है और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस वगैरा रखे हुए हैं और दीवाल में वाइट कलर प्रिंट किया हुआ है।

यहां पे सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर में कुर्ता पहन रखा है और पीला से कलर में दुपट्टा डाल रखा है और यहां --

बिल्डिंग बनी हुई है सामने ब्लेक कलर में गेट लगे हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे रेलिंग लगी हुई हैं --

यहाँ पे साइड मे परदे लगे हुए है मिरर लगे हुए है लाइट भी लगे हुए है और यहां पे ये देखने से पता चलता है की जिम है।

सामने मिरर लगा हुआ है ऊपर बैलून्स लगे हुए हैं जो की अलग-अलग कलर में लगे हुए हैं ऊपर पंखे लगे हुए हैं लाइट लगी हुई है और यहाँ पे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

एक ही स्टाइल में एक ही फ्रेम है और उसके हाथ में मोबाइल है के मशीने रखी गई हैं सीढ़ी लगी हुई है।